नीचे जमीन दिखाई दे रही हैं जमीन--

यहां पर एक पहाड़ नजर आ रहा हैं पहाड़ पत्थर का दिखाई दे रहा हैं उसका रंग भुरा नजर आ रहा हैं।

यहाँ पर एक दूध डेरी नज़र आ रही है एक गुलाबी रंग --

सड़क में एक काले रंग की गाड़ी दिखाई दे रही है उस --

यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क में ए--

अंदर की ओर भी आदमी दिखाई दे रहे है ग्रीन रंग की एक दीवार नजर आ रही है एक येलो रंग की दिखाई दे रही है।

टाइलस का रंग गोरा और सफ़ेद नज़र आ रहा है दो --